ये स्प्रे है सामने और एक ग्रॉप्स है। कंची है। पानी के लिए ये एक जग है।

काफी सारा सामान है थैले हैं हिम और थैले हैं और तेल की बॉटल्स हैं।

और अह यहां पे बालाजी वेफर्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और फर्श साफ करने के लिए--

हाथ में वॉच है जो दूसरे आदमी से बात कर रहा है दूसरे आदमी के सर पे एक टॉवेल लपटा हुआ है और सामने--

और सत्ताईस रुपए में डिस्काउंट कर के मिल जाएंगे और बॉर्नविटा के पैकेट्स हैं और कॉमट्रेन के डब्बे हैं।